कुछ लोग यहाँ पर बैग टांगे हुए भी खड़े हुए हैं। कुछ लोग आ रहे हैं तो लोग कुछ जा रहे हैं। बुक डिपो उतना बड़ा है कि ऊपर तक है। बाइकें भी बहोत सी खड़ी हुई हैं।

तीन मजदूर हैं। वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर बनिये भी हैं।

जिम में बहुत सी मशीने लगी हुई है और काच भी लगा हुआ है जिम की बिल्डिंग का कलर वाइट है।

यहा पर कुछ फर्निचर का काम चल रहा है यहा बहुत सी चीजे बनी हुई रखी हुई है।